जो वहाँ पर नहा कर डुपकी मार कर पूजा कर रहै है।

जो की वो भी बैंड बजा रहे हैं और गाना गा रहे है।

और चेयर की कुछ ग्लासेस के बिंडो लगे हुए है बड़े - बड़े से बीचो बिच खम्भे बने हुए है।

ये पिक टॉप पे से ली गई है गार्डन के बीचो बिच एक सर्कल होकर कुछ क्रोसेस है और बेरियर है।

मेरे सामने जो पिक्चर है मुझे दो कपल की पिक्टर दिखाई दे रही है।

और क्लास का एक डोर है और कुछ विंडोस है।

दुर्गा माँ भी काफी सुन्दर दिख रही हैं।

जहाँ पर सारे शॉप बहुत सारे बुक्स रखे गए है।

जो सामने की पिक्चर है मुझे एक रोड की पिक्चर दिखाई दे रही है जहाँ पर एक --

प्लाष्टिक स्टील और झाड़ू वेगरा भी रखे गई है।

मेरे सामने जो पिक्चर है मुझे केव की पिक्चर दिखाई दे रही हैं।

वहाँ पर बेकरी के सामान भी है खाने के सामान है और गिफ्ट्स स्टोर भी है साइड में --

एक कैफ़े की पिक्चर दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारे चेयर और टेबल लगे हुए है टू सीटेड थ्री सीटेड और उपर--

प्याज और छोटे -छोटे मिर्चा भी रखे गए हैं।

और आगे जाकर भी बस माउंटेन ही दिख रहा है पत्थर - पत्थर जैसा है।

रेक्श में सजाये गए है बड़े से लेके छोटे पेंटिंग्स है।